पाइप पे पाइप रखी गयी है और एक फॅन है और एक इलेक्ट्रिसिटी --

और बहुत सुंदर दिख रहा है।

मुझे मेरे सामने एक नर्सरी दिख रही है नर्सरी में एक इंसान अपने पेड़-पौधों को देख रहा है और वह चारों तरफ पेड़ ही पेड़ पौधे हैं।

और खंभे जैसा दिख रहा है ऊपर की डिजाइनिंग बहुत सुंदर है।

और वो एक म्युजियम में रखा गया है शायद।

और उसके साइड में एक सीढ़ी भी गई हुई है और कुछ एक खंबे जैसा --

उसके ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है।

और साइड से एक रीलिंग भी दी गई है।

यहा पर बहुत सारे यूज़लेस चीजे गिरे हुए है।

और वो कांच के अंदर है चारों तरफ कांच है।

और मिरर जैसा कुछ है।

दो या तीन इंसान घूम रहे है मतलब आदमी और औरत।

पा पानी दिखाई दे रहा है जो की लेक जैसे है और चारो तरफ बहुत सारे के बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ है। --

कुछ बॅनर्स लिखा गए लगाये गए है वहाँ पर और चेयर सब लगाये गए है।

पिलर जैसा दिख रहा है और उसके सामने एक गार्डन है।

गार्डन के बीचो बिच एक पतली सी --

वह सजाये गए है चेयर लगये गए है ऊपर बलून्स लगे हुए है और कॉटन से सजाये गए है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है ये बस स्टैंड --

मेरे सामने मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर नीचे --

मेरे सामने जो पिक्चर दिख रही है वो एक पुराने जा ज़माने का घर दिखा रहा है जहाँ पर बड़े बड़े पिलर है।

और बीचोंबीच एक फैन लगी हुई है यहां पर कोई नहीं है फिलहाल --

कूपुरा खाली है और निचे का जमींन का कलर कुछ ब्राऊन कलर कि है।

एक बड़ासा तालाब जैसे दिख रहा है जहाँ पर बीचो बीच बहुत सारे बोटे है।

ऊपर आसमान में क्लाउड्स ही क्लाउड्स है और पूरा खुला आसमान है और खाली आसमान --

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है जहां पर --

और चारो तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बोट्स भी है।

ए.सी भी लगाया गया हुआ है और फॅन भी लगा हुआ है और कोई नहीं है वहा पे।

साइड वाला टेंट बंद है और पीछे बहुत सारे टेंट है और लाइटो से सजी हुई है।

जा रहे हैं और दो नाव चला रहे हैं दो लोग।

और खुला आसमान है चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पहुते हैं।

और वो क्रूज़ भी बहुत बड़ी है।

वहां पर चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जैसे कि औरत है बच्चे हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं और बूढ़े भी हैं।

मुझे एक ऑफिस की पिक्चर दिखाई दे रही है जहां पर --

बहुत सारे लाइटी लगी हुई हो ऊपर और कोई एक खड़ा हुआ ।

जहां पर सब्जियों का ठेला लगाया गया है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे पार का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर कोई नहीं है और एक साइड में डस्टबिन एक --

वहां पर सारे ईयरिंग्स ब्रेसलेट्स और बहुत सारे --

म पायल के डीस्प्ले में है।

जहां से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है।

और वहां पर कोई नहीं दिख रहा और नीचे ये कारपेट लगाया गया है लाल कलर के और हर तरफ --

मेरे सामने जो पिक्चर है जो मुझे एक मूवी --

हॉल दिखाई दे रहा जिसका नाम है आयनोक --

डिअर दिख रहा है जो की एक स्टेचू है।

चारो तरफ दीवार है और घास है।

और वो डिअर की स्टेचू कुछ ब्राउन कलर की है।

मुझे मेरे सामने एक बस टर्मिनस दिख रहा है।

कुछ एक डिजाईन दिख रहा है जहाँ पर बँनर लगे हुए है।

पुराने स्कल्प्टचर्स के और मूर्तियो के उसके सामने एक --

मेरे सामने मुझे एक स्वीट ड्रीम्स की बेकरी दिख रही है।